बाइक्स हैं और बहोत सारी थैले भी रखे हुए हैं। साइड में बहोत सारे पेड़ भी हैं।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

इस दुकान के पीछे एक घर बने हुए है कुछ कच्चे है और ब्लू कलर के बॉक्सेस रखे हुए है।

जिस पे एक बड़ा सा गेट है चार खिड़कियां हैं और एक बड़ी मूर्ति रखी हुई है।

दी गई हुई तस्वीर पे हम देख सकते है एक बहुत ही बड़ा घर बना हुआ है ।

और एक गाड़ी नजर आ रही है जो की यलो कलर से पेंटेड है। इस शॉप पे एक पोस्टर बना हुआ है जिस पे लिखा है राज शू कलेक्शन ।